एक वाइट बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

यहां बहुत सारे चांदी के सिक्के--

कुछ लोग दिख रहे हैं यहां--

कुछ बैलूंस दिख रहे हैं।

मॉनसून दिख रहा है।

एक पोस्टर दिख रहा है।

यहां ब्राउन केबिन दिख रहा है यहां--

इस चित्र में एक कैलकुलेट दिख रहा है।

यहां एक बहुत बड़ी छत नजर आ रही है।

यहां एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

यहां बहुत सारे बैलूंस भी दिख रही हैं।

यहां एक वाइट कलर का पोस्टर दिख रहा है।

यहां बहुत सारी लाइट्स लगी दिख रही हैं।

इस चित्र में बहुत सारे फ्रूट्स रखे दिख रहे हैं।

इस चित्र में वाइट कलर की एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

यहां बहुत सारे केबिन दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक फिरोजी बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ दो छत्रियां दिख रही हैं।

इस चित्र में दो लोग दिख रहे हैं।

यहां एक येलो कलर की बिल्डिंग भी दिख रही है।

इस चित्र में पत्थर का एक बहुत बड़ा किला है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड नजर आ रहा है यहां बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहां बहुत सारी रेलिंग्स दिख रही हैं यहां बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां कुछ कुर्सियां रखी दिख रही है यहां कुछ पेड़ नजर आ रही है।

इस चित्र में एक बड़ा रोड नजर आ रहा हैं।

यहा एक ब्लू बस दिख रही है।

इस चित्र में दो लोग बैठे नजर आ रहे हैं।

यहां बहोत सारी बिडिंग्स नजर आ रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ा तालाब नजर आ रहा है।

यहां एक रेलिंग दिख रही है।

यहां ब्लू टीन दिख रहा है।

इस चित्र मे एक कार जाती दिख रही है।

यहां एक ऑटो जाता दिख रहा है।

यहां बहुत सारे पाड़ नजर आ रहे हैं।